कंप्यूटर दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में यह दिखाई दे रहा है कि एक मैदान है जिसमें बहोत सारे लोग खेल रहे --

इस तस्वीर मे यह दिखाई दे रहा है कि आसमान दिख रहा है और एक इमारत बनी है है जिसमे --